पीछे घर बना हुआ है जिसमें गेट लगा हुआ है।

और छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है गड्ढे के पास में।

कुछ यात्री आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं अंदर की ओर--

दुकानदार बैठा हुआ है कुर्सी पे।

वाहन सड़क पे जाती हुई दिख रही है।

ये तस्वीर एक पेट्रोल टंकी की ली गई है।

मेट्रो के अंदर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है।

जिस में पटरी पर ट्रेन जा रही है।

छोटी घास लगी हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

पानी की टुटी भी दिख रही है जिसमें एक तरफ पानी बहता दिख रहा है।

पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ग्राउंड में घास भी दिख रही है।

एक औरत बैठी है कुर्सी पे और एक लड़की सामान ले रही है दुकानदार से--

एक व्यक्ति खड़ा है और गुब्बाड़े लगे हैं।

और लाइट जल रही है बोर्ड टंगे हुए है दो दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

खंबा भी दिखाई दे रहा है आउ खंबे पे बोर्ड लगा हुआ--

जिसमें पुतला भी दिखाई दे रहे हैं और पुतले कपड़े पहने हुए खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके साथ बच्चा हुआ है बच्चा है कुर्सी है और गमला है।

पंखा चल रहा है लाइट चल रही है।

जिसमें कोई इंसान दिख नहीं रहा है।

तस्वीर में एक गेट दिखाई दे रहा और खंभे दिखाई दे रहे हैं।

महिलाएं दिखाई दे रही हैं गाड़ी साइकिल से आते जाते हुए दुकान दिखाई दे रही है खिलौनों की।

और ये गेट पे लिखा है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा यानी कि घाट की है तस्वीर।

औ सीढ़ी चढ़ने वाला झूला भी दिखाई दे रहा है।

सड़क भी है जिसमें गाड़ी पार्क दिख रही हैं।

दूल्हा दुल्हन नजर आ रहे--

महिला भी दिख रही है एक बच्चा दिखाई दे रहा है।